यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पेड़ पौधों की तस्वीरे बनाई गई है जिससे यहाँ पे पता चलता है--

यहां पर और भी प्रकार के चीजे रखी होंगी जिनसे लोग अपनी सेहत बनाते हैं|